एक घर है घर व्हाइट कलर का पोता हुआ है और उसके ऊपर शीट डाली हुई है।

टॉफियाँ हैं एण्ड साबुनें रखे हुए हैं फ्रीज़र है फ्रीज़र के पास बोतलें रखी हुई हैं फ्रीज़र में टाइमिंग का टेम्परचर भी दिख रहा है।

ग्रीन कलर के झाड़ लगे हुए है चारों तरफ एण्ड ट्रेन है।

एण्ड बिजली के तार लगे हुए है बहुत सारे बिजली के तार है टेररीस है छत है बिल्डिंग ए - दिख रही है एण्ड व्हाइट कलर की बिल्डिंग ए - दिख रही है आसमान नीला है।

व पहाड़ पहाड़ जैसे बना हुआ है और उसमे हरियाली लगी हुई है ब समुद्र के किनारे में बहुत सारे पत्थर के पत्थर पड़े हुए है।

ओरेंज ग्रीन रेड कलर के फ्लावर से डेकोरेट किया गया है एक बहुत बड़ा कमरा है कमरे के अन --